ये एक बड़ा सा गेट है। गेट के डिजाइन अच्छी है ऊपर दीवाल के आकार में बो बने हुये हैं।

यह एक बड़े से ग्राउंड की फोटो है। इस ग्राउंड में --

हरियाली है ग्राउंड के चारों तरफ कुछ घर बने हुए हैं।

आस-पास काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पेड़ पौधे हरे भरे हैं।

कुछ स्टेप्स बनी हुई हैं सीढ़ियां बनी हुई हैं। जिस पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं। कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी वहां पर हैं।

कुछ बच्चे भी वहां पर है। अच्छी लाइटिंग लगी हुई है।

इसमें सब लोग खेलते हैं। यहां पर काफी हरियाली है।

ऊपर का मौसम साफ है। आस-पास हरियाली हैं। किसी ने दीवार के पीछे कुछ लिखा हुआ है।

बॉडी दिखा रहा है। इसमें कांच लगे हुए हैं काफी सारी मशीने हैं। एक गेट दिख रहा है।

एक फ्लोर दिख रहा है जिसके आस-पास काफी हरियाली भी है। ऊपर कुछ माइक --

लगे हुए हमें दिख रहे हैं। कुछ दीवाले बनी हुई हैं छोटी-छोटी। कुछ झंडियां भी लगी हुई हैं।

यहाँ पर एक गुंबद बने हुई है ऊपर होकर थोड़ी नीचे कुछ रास्ता भी दिया गया है अंदर तक जाने के लिए।

यह एक गार्डन की फोटो है यहाँ पर काफी अलग-अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिख रहे है।

इससे काफी सारा पानी डैम के इस तरफ आ रहा है डैम के उस तरफ भी काफी सारा पानी होगा।

इसमें दो व्यक्ति और दिख रहे हैं जो कि मशीन में काम कर रहे हैं। मशीन लकड़ी और लोहे को मिलाकर बनाई गई है।

नीचे का जो फ्लोर है वो गुलाबी और नीले रंग से रंगा हुआ है।

और कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं आस-पास मशीने भी रखी हुई हैं। नीचे एक हरे कलर का कारपेट बिछ हुआ है।

एक स्विच बोर्ड दिख रहा है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है और एक प्लेग लगा हुआ है जो कि इस मशीन का है।

इस फोटो में काफी सारे टूटे-फूटे टूल दिख रहे हैं।